यहाँ कुछ लोग खड़े है।

मिट्टी के कलर का है।

किले की किसी एक जगह का पिक्चर है।

सामने एक दरवाजा है।

इस दृश्य में भीड़ दिख रही है।

दो खम्भे भी दिख रहे हैं।

पत्थर की सड़क भी दिख रही --

सेहत के लिए अच्छे होते हैं।

ऊपर की शिखा पर लाल रंग से डिज़ाइन किया हुआ हैं।

बोहोत बहो बड़ा-बड़ा अंडा जिसमे तीन खम्भे लगे हुए हैं।